बड़ी बिल्डिंग है दो बहुत बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ है। सामने से एक बड़ा दरवाज़ा है। ऊपर एक के नाम से बैनर लगा हुआ है। बिल्डिंग का कलर क्रीम है जिसमें रेड कलर की धारियाँ है।

यह आलू है जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं ये चिप्स बनाने के बड़े-बड़े आलू है इनका कलर ब्राउन है इन पर थोड़ी बहुत मिट्टी लगी हुई है जो की इकट्ठा रखे हुए है ये कैरेट में रखे हुए हैं।

आसमान कई रंगो का दिख रहा है। धुप निकल --

ऊपर बहुत सरे लाइटे लगी हुई है हॉल का कलर क्रीम कलर का है निचे क्रीम कलर का टाइल्स लगे हुए है खिरकियो पर पर्दे डले हुए है बहुत बढ़े बढ़े दरवाजा --

अ पीछे की दीवार पे अ घ एक सिंदरी लगी हुई है सामने एक टेबुल रखी है साइड से बहुत सारे परदे लटके हुए है।